और मेडम सब सीखा छै पर्ची कुछ

वहां आदमी एकोठो नए दिखाई दे छै।

पहिया खोलल छै एकटा आदमी ठीक करे छै ।

तोरा गाड़ी रखल छै ई आदमी लगे छै ठीक करे छै एक आदमी छै इ आदमी

उजला-उजला दी छे उपरा आदमी सब बच्चा सब खड़ा देखे छे नज़ारा सूंदर नज़ारा --

जेत पत्त्थर-उथर दिखाई दी छै और सुनसान जगह लागे छै कोई ने दिखाई दे छै आसमान भी हरा-भरा दिखाई छै।

अमरुद सूंदर अच्छा लागे छै

आ दीवाल लग चिड़िया उरिया पूरा चिपकाएल छै सभी तरफ चिड़या पशु प --

बादल छैएल छैएल छै आब पुला भी छै अंधेरा पूरा छे बड़का बड़का पुल टा छै ।

बड़का-बड़का पेट्रोल पंप छै ओय पे लिखल छै इंडियन आयल ।

पेड़ दोनो तरफ से ताला उला लगल छै और कोनो आदमी ने दिखाई दे छैऔर बढ़िया --

और लाइटें कम व्यवस्था छै | बाहर अ गाछ वृक्ष छै दिखाई दे छै ।

होटल दिखाई दे छै बढ़िया जेसन इसमे एक बात लिखल छै

आदमी सब भी बहुत सारा छे बहुत सारा मछली वाला बैठिये छे पानी --

खिड़की उरकी शीशा उसा छै लाइट पूरा लगाइल छै आदमी मेरे से --

यहाँ पर पूरा भीतर लाइट उइट पूरा लगाल छे | अंदर दू दुकान छे लागे छे मॉल छे | सभी पहर दुकान --

पूरा एकदम खचा खच भरल छै खटाल उटाल सब कुछ सही तरह से

हमरा ते लागे छै कुछो चिपका छै लाल कलर गाड़ी छै आर सीसा सब पूरा बहुत लागाल छै दीवाल आर --